और यहाँ घर है अगल-बगल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर है जगह भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का पेड़ भी बहुत सुन्दर है और पूरा फील्ड है यहाँ मैच वगेरह सब खेल --

ये पूरा यहाँ पर अथी है इ पूर्णिया का सिन है जो की बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में और खूबसूरत भी है अच्छा खासा दिख भी रहा है।

ये बुक उक का किताब उताब का दुकान है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है।

यहाँ पर पार्क है जो की पार्क मे बच्चे सब खेल रहे हैं लोग और अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ का जगह भी बहत सुन्दर है बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे खूबसूरत भी है हर चीज भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहत सुन्दर भी है हर चीज भी प्यारा लग रहा है देखने मे अच्छा खासा है बच्चे ढ़ेरी है बच्चा लोग।

यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है और अच्छा खासा दिख भी रहा है और पूरा हिल रहा है यहाँ पर जो कि फील्ड में ये सब अपना खेल कूद कर रहें है लोग और बच्चा लोग क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहोत खूबसूरत लग रहा है यहाँ का --